चांधी का दिया जलाने का बना हुआ है।

ये एक पुराने पुरानी-सी जगह है।

ये एक फैक्ट्री है।

जगह है। इसमें ये दरवाजा बहुत ही अच्छा बड़ा गोल्डन कलर का है।

यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है।

यहाँ पे अच्छे-अच्छे लेडीज़ के सारे कपड़े हैं।

ये आदमी यहाँ पे बॉडी बना रहा है।

केक बिस्किट्स सब मिल जायेगा।

इस मंदिर में यहाँ पे पूजा करने बैठे हुए है।